एक मछली की दुकान है। यह मछली की दुकान में जिन्दा मछली हर रोज बेची जाती है।

यह डांस क्लास सपते में चार दिन चलता है। यहाँ पर हर रोज प्रैक्टिस चलता है।

यह एक दुकान है। यह दुकान में दुल्हे के लिए शेरवानी कोट जैसी चीजे यहाँ पर मिलती हैं।

यह पार्क के दूसरी ओर एक नेहेर बेहता है जिसमें हमेशा पानी बेहता हुआ रहता है।